सभी बच्चे खेलने के लिए आते हैं। यह क्रिकेट ग्राउंड है। यहाँ एक बैठने के लिए जगह भी है।

यह इमेज एस.आर. जेंट्स सैलून के बाहर से लिया गया है।

इस इमेज में राज्‍य स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्याण संस्थान पटना लिखा हुआ है।

इस इमेज में एक होटल में एक प्‍लेट में ऑमलेट --

अंदर जाते हुए दिखाई दे रहें हैं और एक लेडीज साड़ी खरीद रहें हैं और यहाँ रंग बिरंगे के साड़ियां हैं और यहाँ एक सी.सी.टि.वी. कैमरा भी है जो एक बड़े टी.वी. में दर्शाया --

यहाँ एक व्यक्ति सभी सामानों को बेचता है। यहाँ एक चायपत्ती की पैकेट भी है। यहाँ एक कुरकुरा बिस्कुट लोलीपॉप चॉकलेट आदी --

यह इमेज राष्‍ट्रीय कौशल विकास निगम यहाँ ऐसा लिखा हुआ है।

और यहां अभी ठंड पड़ रही है यहां बहुत सारे रंग बिरंगे केजल कुंड भी --

एवं कई सारे व्यक्तियाँ यहाँ आए हुए हैं यहाँ सोने से चमक बहोत उठ रही है यहाँ रंग-बिरंगे के फूल लगे हुए हैं साथ में ही --

दो सड़क आपस में मिल रहे है यहां बहुत ही सुन्‍दर अभी पतझड़ का मौसम है यहां बहुत ही बड़ी-बड़ी बिल्डिंग भी हैं साथ मे ही यह --

सूर्य की रोशनी से चार्ज होकर ऑटो की बैटरी को चार्ज कर देता है और ऑटो हमेशा चलता रहता है और कभी रुकता नहीं है। यही कारण है --